इसमें बहुत बड़ा देखने मे लग रहा है सिनेमा होल है एक बहुत सारे कुर्सियां रखे हुए है देखने मे ब्लैक कलर के है बहुत अच्छा लग रहे हैं।

यह देखने मे बहुत अच्छा लगता है कुछ लोगो को बिजली के खंभे अगल-बगल में --

इस दृश्य में बड़ा-सा एक मंदिल है एक मंदिर लग रहा है राधे-कृष्णा का मंदिर है एक मोर है रेड कलर से सजा हुआ बहुत सारी माला पहना हुआ है कई मूर्ति भी बना हुआ है।